एक हॉस्पिटल है जिस जिसके अंदर पोर्च एरिया है एक पेड़ लगा हुआ है दो खंबे लगे हुए है।

एक दुकान है जिसके बाहर एक केरम टंगा हुआ है काफी सारी बुक टंगी हुई है। एक बैट डला हुआ है।

एक ए_टी_एम है ए_टी_एम के बाहर दो लेडीज खड़ी हुई है एक लेडीज कुछ करती हुई दिखाई दे रही है एक थैला ली हुई है एक पर्स ली हुई है और वो बाउंड्री से निकल बाउंड्री मे खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

एक कार्यालय है जिसमे एक कुर्ता पैजामा एक व्यक्ति पहने हुए है। कुछ लोग टेबल मे बैठे हुए है और उन वो कुछ बता रहे।